और ग्रीन और वाइट कलर लगाया हुआ है मस्जिद में।

एक आदमी भी दिखाई पड़ रहा है।

और ए_सी का मशीन दिख रहा है।

चार साइकिलें भी दिखाई दे रहे हैं।

और बिजली का ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मैदान को दर्शाया गया है।

और एक स्टील का रॉड भी दिखाई पड़ रहा है।

और एक बाइक दो स्कूटी भी दिखाई पड़ रहा है।

टेबल भी दिख रहा है।

और इस शॉप के ऊपर रियलमी वीवो और सैमसंग लिखा हुआ है।

घर के ऊपर रेड कलर का एक पोस्टर भी लगा हुआ है।